तीन लड़का है जिसमें काला टी शर्ट वाला लड़का आगे है लेकिन दो लड़का पीछे है।

यहां पे चारों तरफ पेड़ दिख रहा है।

एक आदमी नीला टी शर्ट पेहनकर कुर्सी प बैठा हुआ है।

दो कुर्सी इस साइड है और एक टेबल पे हाथ धरा हुआ है और एक कुर्सी पीला कलर उस साइड है और देवाल के ऊपर ये ऊपर ये स्टार की तरह चमक रहा है हारा --

रट लगा हुआ है और बाहर हरा भरा थोड़ा सा नीचा दिख रहा है और काते-काते घर से दिख रहा है घर के उस--

कटिंग किया गया है और बीच में शीशा उसा लगा।

यहां दुकान दिख रहा है दुकान के बाहर रोड है और रोड के साइड में एक कार लगा हुआ है और दुकान के पीछे हरा भरा पेड़ पोधा दिख रहा है।

और ये टेंट लऊक रहा है और टेंट के ऊपर पोस्टर सटा हुआ है और ऊपर से भी जाली लगा हुआ है।

यह एक मशीन है जिसमें आदमी कुछ कर रहा है और चारों तरफ से--

यह एक सरकारी विद्यालय और इसके बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड है और आजू-बाजू में अनेक प्रकार के पेड़-पौदा लगा हुआ है और बीच में लाइट ओट लगा हुआ है।

यह एक ग्रिल लगा हुआ है जिसका पेंट हुआ है और घिरी नीचे बना हुआ है और यह ग्रिल दोनो बगल से खुल सकता है और इसमें डिजाइन दिया गया और फूल कहते कहते ग्रिल में फूल पड़ा हुआ है।